जहां पर हम दो युवक को देख सकते हैं जो कुछ बातें कर रहे हैं।

यहां पर हम डम्बल्स देख सकते हैं जो की अलग अलग वेट के हैं यहां पे बेंच भी है जो एक्सरसाइज करने के लिए लगाए गए हैं।

इस मन फोटो में हम एक मंदिर को देख सकते है।

परंतु यहां हमें कोई भी जिम का समान नहीं दिख रहा है।

यहां पर एक लोहे का गेट है ऊपर एक आयरन ट्राइब जिम का बोर्ड लगा हुआ है और किनारे पर कुछ लोहे के समान रखा गया है।

जो की तकरीबन बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है।

किसी ने हरे रंग की पहिए तो किसी ने लाल रंग की यहां पाड़ पहाड़ भी क्लियर नहीं दिख रहे क्योंकि मौसम खराब हो रखा है।

इस तस्वीर में हमें एक स्टेशनरी की दुकान दिखाई गई है।